और ढे भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो रखे हैं।

यहां पर पहाड़ों के बीच कई सुंदर सुंदर लोग मकान बना रखे हैं।

और आप देख सकते हैं लोगों के बैठने के लिए भी बहोत शानदार जगह है।

में घर का इंटीरियर वुडन है और छत पर लकड़ी से कई डिजाइन बना रखे हैं जो की देखने में बहोत अच्छा लगता है।

बर्फ से ढका हुआ है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है।

जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस होटल में कई सारे टूरिस्ट हर दिन घूमने आते हैं।

और इस रास्ते मे कई सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और लोगों ने अपनी गाड़ियां भी पार्किंग पे लगा रखी है।

यह फोटो एक नदी के पास की है।

हालत खस्ता है आप उस व्यक्ति को यहां ला सकते हैं ईलाज करवाने।

यह इसमें दिख रहा होटल बहोत ही शानदार है अगर आप कभी शिमला घूमने आए तो इस जगह पर जरूर जाएं।

और आप देख सकते हैं यहां पर कई सारी गाड़ियां भी खड़ी है और--

पेड़ प पेड़ बड़े बड़े पेड़ो से घिरा हू --

इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं की साफ साफ मौसम है और--

और इसमें ऑरेंज कलर की दिख रही बिल्डिंग --

यह फोटो पहाड़ी साइड के इलकों की है।